और बहुत सारे मरीज भी हैं। देखने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है की बहुत बढ़िया तरिके से इसको ओर्गनाइज किया गया है और --

जिसके तरफ से पाठशाला की तरफ से प्रथम पाठशाला की तरफ से बच्चों को ड्रेस वितरण किया जा रहा है।

कृत्यानंगर कृत्यानंद और ये स्टेशन है और ये स्टेशन काफी साफ़-सुथरा है क्योंकि यहाँ पे काफी कम ट्रेनें रूकती हैं।

यहाँ हमेशा पहाड़ से पानी गिरता है और बहुत अच्छा तरीके से यहाँ लोग आते हैं पहाड़ के पानी से इंजॉय करते हैं।